इसमे कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं।

इसमें कुछ नर्स और डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

उनके मुंह पर मास्क भी दिखाई दे रहा है। टेबल भी नजर आ रही है।

व्यक्ति ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई है| बिल्डिंग पर बोर्ड --

इसमें कॉस्मेटिक की सामग्री भी नजर आ रही है। कुर्सी दिख रही है।

इसमें कुछ व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे नजर आ रहे हैं।

इसमें तीन औरते और एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं मोटरसाइकिले भी दिखाई दे रही हैं ।

ही इसमें एक व्यक्ति के पैरों पर पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं।

उसके पीछे की तरफ पर्दा लगा हुआ है।